रूम का अंदर पर एक बड़ा सा सोफा भी रखा हुआ है।

इस फोटो पर चप्पल का दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर चप्पल और जूता बहुत सारा दिखाई दे रही है रख के और ऊपर पर भी अलग अलग कलर का बॉक्स रखा हुआ है।

पीछे साइड में भी घर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है।

और बैग लोग भी रखा हुआ है लटका कर के।

इस घर की बाहर पर भी बहोत सारा चार्ट दिखाई दे रहा है।

और यहां पे लाइट का पोस भी दो दिखाई दे रही है।

इस फोटो पर एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

जिसका ऊपर में माचिस का लाठी जैसा वाला लगा करके बहुत सारा है।

इस फोटो में एक पर्क दिखाई दे रहा है।

अलग अलग सामान भी बहुत सारा है।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

इस फोटो में एक दुकान का बाहर दिखाई दे रहा है।

और यहां में बहुत ज्यादा लोहा भी रख के है गेट का सामने पे।

और दो इंसान भी दिखाई दे रही है एक बैठा हुआ एक खड़ा करके और नीचे पर भी बहोत सारा लाइट बढ़िया से चला करके है।

वो बड़ा सा फ्रिज भी रखा हुआ है ब्लैक कलर पे और चार और टेबल भी रखा हुआ है।

और पेड़ और ग्रास लोग भी बहुत सारा है ग्रीन ग्रीन कलर का।

और टेबल का ऊपर भी बीस अलग अलग सामान रखा हुआ है और बुक्स भी रखा हुआ है।

उसका पीछे पर भी एक मूर्ति दिखाई दे रही है उस मूर्ति को बढ़िया से फूलों से सजाकर के है।

इस फोटो में एक लंबा वाला बालकनी दिखाई दे रही है।